यहाँ पे एक पहाड़ भी है और पहाड़ में एक रास्ते भी बने हुए हैं। काफी हरियाली नज़र आ रही है।

आदमी यहां करने जाता है और काफी रिलैक्सइंग महसूस करता है काफी अच्छा दृश्य है यहां।

और यहां पे घूमने में भी काफी आनंद प्रतीत होता होगा।

किया जा रहा है जिससे कि बाजार में वो मछली बिके और उससे व्यवसाय हो सके ओर किसान का।

यह किसी जंगल का पहाड़ों के बीच में ये नहर या झील ऐसा दिख रहा है।

ये कोई रेज़िडेन्शल एरिया लग रहा है। जहाँ पे यहाँ पे काफी मकाने दिख रही हैं।

और यहाँ पे बाज़ार के नाते ही कोई साप्ताहिक बाज़ार होता है जो लगता है शहरों में। तो उस दिन काफी भीड़ एकत्रित होती है। तमाम लोग अपना बर-बाजार करते हैं। सारी चीजें करते हैं वहाँ पे।

तमाम पैकेट के आइटम है छोटे-छोटे पैकेट आइटम हैं चिकन मसाला मीट मसाला और भी कई चीजें हैं।